यह कोई बाउवा का बर्थडे है और बाउवा का बर्थडे है इसलिए छोटा सा केक है चारों तरफ बैलून्स लगा हुआ है।

यह छठ पूजा का फोटो है इसमें सब औरतें छठ पूजा करते हैं और --

तीनगो औरत हैं और एक लड़का है लड़का पत्थर पर बैठा है।